यहाँ पर कोई फंक्शन होने वाली है।

पेड़ पर हमे बहुत सारे पक्के-पक्के केले है। यह केले यह बंदर--

बहुत सारे रंग-रंग करने वाले भी रखे गए हैं।

बहुत सारे गमले हैं यह गमलों में बहुत सारे पेड़-पौधे भी हैं यह सड़क के बीचो-बीच --

कुछ दौड़कर इस पर चढ़कर दौड़ते हुए जिम करते हैं।

यह पार्क है। यह पार्क काफी बड़ा है। यह पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

बैठे हुए हैं एवं बहुत सारे पैसेंजर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ।

आते जाते हैं यह एयरपोर्ट पर बहुत से आदमी यह एरोप्लेन --

बहुत सारे डब्बे रहते हैं यह डब्बों में बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए रहते हैं।

यह तालाब में चबूतरा भी बनाया गया है यह चबूतरे पर बहुत सारे आदमी नहाते हैं।

यहाँ पर बहुत सुन्दर-सुन्दर फूलों से यह स्टेज को सजा दिया गया है यह स्टेज के उपर एक सोफ़ा लगा है।